पर कई ग्रैंड सर्विस की गाड़िया खड़ी हुई है।

यह फोटो एक ऑटो वर्कशॉप का है जिसका नाम सांगवान ऑटो वर्कशॉप है।

यह फोटो एक वर्क शॉप के अंदर का है।

पहने हुए हैं यह पहाड़ काफी ऊँचा हैं।

यह फोटो देवी जागरण के लिए वो की गई डेकोरेशन का है तथा--

काफी डेकोरेशन किया गया है तथा --

भारत पेट्रोलियम के इधर से उधर ले जाने के काम में आता है।

जिसके किनारे पर भी जेस एस_बी_आई भी बैंक है।

भी खड़े हुए हैं फोटो में मौसम--

काफी साफ पानी है यह वाटर पार्क काफी बड़ा है।

काफी पेड़ छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगे हुए है।

यह फोटो एक सेपरेट रूम का है जिसमें--

यहां फोटो एक बड़े हाईवे का है तथा।

यह फोटो जूतो के दुकान का है।